टेबल को साफ कर रहा है।

एक महिला गितार लिए हुए और एक महिला माइक में संगीत सुना रही है और पुरुष ढोलक बजा रहा है।

कुछ पानी भी नजर आ रहे हैं।

और बगल में एक बड़ा सा घर भी नजर आ रहा है अगल बगल ट्रांसफार्मर लगे--

और वहां पे एक बहोत ही बड़ा पीपल का पेड़ है उसके अलावा बहोत सारे पेड़ पौधे घर और बहुत सारे--

बहोत ही अच्छे अच्छे फैशनेबल ड्रेस पहने हुई हैं।

इसमें से एक गुड़िया है रेड व्हाइट पिंक ब्लू ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई है।

बगल पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।